यह एक ए.टी.एम. है यह ए.टी.एम. बहुत बड़ा है यहाँ ए.टी.एम. से लोग पैसे निकालते है।

यह एक टेन्ट बनाया गया है जिसको की --

यह एक साईकल स्टोर है। यहाँ पर बहुत प्रकार की नई-नई साइकिलें मिलती। यहाँ पर नई-नई मिलती है।